और यहां पर हम लोग देख सकते है कि एक आदमी है जो इस इवेंट को होस्ट कर रहे हैं जिनके हाथ मे माइक है।

और स्टेज पर हम लोग देख सकते है एक आदमी सैंटा क्लॉज़ के गेटअप लिया हुआ है।

और यहा पर हम लोग बच्चे जवान सभी को हम लोग देख सकते हैं जो शायद क्रिसमस मनाने आए हैं।

इस फोटो को देख कर हम यह कह सकते हैं कि ये शायद किसी बस स्टेशन की फोटो है यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे आदमी लोग लाइन में खड़े हैं।

और हम लोग यहां पे बहुत सारे लाइट्स स्ट्रीट लाइट भी हम लोग देख रहे हैं और हम लोग आगे बहुत सारे बस भी देख रहे हैं।

इस फोटो को देखकर हमलोग यह कह सकते हैं कि ये कोई कंस्ट्रक्शन साइट की फोटो है जहां पर हमलोग देख रहे हैं की बहोत सारे लेबर हैं जो की बहोत मेहनत से काम कर रहे हैं।

यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि दो लेबर है जिन्होंने अपने माथे पे सीमेंट का मसाला उठाकर लेकर जा रहे हैं और एक लेबर है जिसने हाथ में प्लेट ले रखी हैं।

इस फोटो को देख कर हम लोग यह कह सकते हैं कि यह किसी फैक्ट्री या फिर वर्कशॉप या फिर मिल के अंदर की फोटो है।

और हम लोग इस फोटो में देख सकते है कि दो आदमी है जो शायद ये फैक्ट्री के लेबर है जो कि अपने काम कर रहे हैं।

इस फोटो को देखकर हम यह कह सकते है कि ये फोटो एक कंस्ट्रक्शन साइट की ली गई है।

यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि आसपास में लकरी भी बिखरे हुए हैं।

हम लोग देख सकते हैं कि यहां पर तीन लेबर है दो मजदूर अपने काम बहुत मेहनत से कर रहे हैं और तीसरा लेबर भी बहुत मेहनत से काम कर रहा है।

इस फोटो को देखकर हम लोग कह सकते हैं कि यहां पर एक ग्रीन कलर की बिल्डिंग है जिसमें ब्लू कलर की लाइनिंग की गई है।

इस फोटो को देखकर हम लोग यह कर सकते हैं कि यह किसी शादी या फिर किसी इवेंट की फोटो है।

इस फोटो को देखकर हम लोग यह कह सकते हैं कि ये किसी स्कूल की फोटो है।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

इस फोटो को देखकर लग रहा है कि ये लोग कोई इवेंट या फिर कुछ मीटिंग अटेंड कर रहे हैं और वो भी ओपन एरिया में।

इस फोटो को देखकर हम लोग कह सकते है की यहां पर तीन लड़के बच्चे है जो लोग रेसिंग कर रहे है जो की एक दूसरे से कंपीट कर रहे है दौड़ने मे--

और वो लोग प्रेयर कर रहे हैं और हम लोग देख सकते हैं कि इन सभी बच्चों ने व्हाइट कलर की यूनिफॉर्म पहनी हुई है।

और उनके आगे में दो उनके टीचर भी मौजूद है और एक हमारे इंडिया का --

हम लोग देख सकते है की इसके ऊपर मे लिखा हुआ है फूडट्रैक और इसके आगे मे हम लोग देख सकते है की बहोत सारे बाइक भी पार्क किए गये है।

और उसके आगे हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे रिक्शे वाले भी खड़े हैं किसी ने तो सामान रखा हुआ है रिक्शे पर और बहोत सारे आदमी भी है यहां पर --

इस फोटो को देख कर हम लोग ये कह सकते हैं कि ये एक ए_टी_एम की फोटो है जो कि बाहर से ली गई है।

हम लोग देख सकते है कि एक पुलिस वाला भी वहां पर खड़ा है और बहुत सारे आदमी भी हैं यहां पर और ए_टी_एम अभी तक खुली हुई --

इस फोटो को देखकर हम लोग कह सकते हैं कि ये एक मस्जिद की फोटो है।

इस फोटो को मस्जिद के अंदर लिया गया हैं और यहां पर हम लोग देख सकते है कि यहां पर दो तीन आदमी हैं जिन्होंने पूरे सफेद कलर के कपड़े पेहने हुए है कुर्ता पजामा टोपी सब उनके सफेद कलर की है।

रोहा पर हम लोग देख सकते है के दो आदमी कुछ बातें कर रहे हैं खरे करके।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

और दो आदमी है जिन्होंने लाल रंग की टीशर्ट पेहनी हुई है।

इस फोटो को देख कर हम लोग यह कह सकते हैं कि ये किसी ब्रिज पर ली गई है और यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि ब्रिज के ऊपर में एक महिला है और एक पुरुष है।

इस पिक्चर में हमलोग देख सकते हैं कि एक बहोत बड़ी सी बिल्डिंग है जिसके ग्राउंड फ्लोर पर एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है।

और इस दुकान के ऊपर बजाज फाइनेंस का भी एक ऑफिस नजर --

इस फोटो को देखकर हम लोग यह कह सकते हैं कि एक चर्च की फोटो है हमनो यहां पर देख सकते हैं कि जीजस क्राइस की मूर्ति भी है और यहां पर फादर एंड सिस्टर लोग भी यहां पर मौजूद है और बैठे हुए हैं।

इस फोटोज में हम लोग देख सकते हैं कि इस दुकान के ऊपर लिखा हुआ है बस्तर डेरी फार्म ।

टीका लगाई हुई है और उसके ऊपर में एक आदमी खरा हुआ है और उसने लाठी पकड़ी हुई है।

इस फोटो को देखकर हम लोग कह सकते है की यहां पर चार बच्चे है और उनके पीछे मे दो आदमी भी है।

और लड़की ने पिंक कलर की फ्रॉक पहनी हुई है और बटरफ्लाई वाले एक्सेसरी भी पहनी हुई है।

इस फोटो को देखकर हमलोग कह सकते है कि ये एक होटल की फोटो है। यहां पे बेकरी आइटम भी मिलेंगे और हमलोग देख सकते हैं कि यहां पर --

होटल के ऊपर लिखा हुआ है होटल गेटवे कर्नाटका तो ये कर्नाटका की एक होटल है और यहां पर हम लोग देख सकते हैं --

इ होटल के आगे में दो आदमी भी है जो कि शायद होटल के अंदर जा रहे हैं और होटल के नीचे एक पार्किंग एरिया भी --

यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि यहां हनुमान जी की मूर्ति है शंकर भगवान भी है और यहां पर यह दुर्गा माता है।

और यहां पर पंडित भी है और दो आदमी है जो जिन्होंने सेम कलर की कपड़े पहनी हुई है।

इस फोटो को देखकर हमें कह सकते हैं कि ये एक कंस्ट्रक्शन साइट की फोटो है यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि एक आदमी खरा हुआ है जिसने जैकेट पहनी हुई है और जींस पहनी हुई है।

है और उसके बगल में बहुत सारे लेबर वर्कर्स है जिसने येलो कलर के हैट पहनी हुई है।

और हम लोग देख सकते है की वो लोग बहोत मेहनत करके अपने काम कर रहे हैं।

हम लोग देख सकते हैं कि इस बिल्डिंग के बाहर में बहुत सारे बाइक भी पार्क किए गए हैं और स्कूटी भी है।

हम लोग देख सकते है कि यहां पर बिल्डिंग के आगे में बहोत सारे लड़के लोग भी है जो कि वहां पे खरे है और कोई कुछ कहीं जा रहा है कोई चल रहा है।

और इस फोटो में हम लोग देख सकते हैं कि अंदर में एक आदमी है जो अपना बाल या फिर कुछ अपना काम करवा रहा है।

और एक आदमी रुक रहा है और एक आदमी फोन से बात कर रहा है।

इस फोटो को देखकर हम लोग ये कह सकते है की यह एक बर्फीले जगह की ये फोटो है हम लोग देख सकते है की यहां पर बहोत सारे लोग स्केटिंग कर रहे है।

और यहाँ पे आप लोग देख सकते है कि बहोत लंबे लंबे पेड़ पौधे भी है।

हम लोग देख सकते हैं कि यहां पे बहोत सारे बच्चे बूढ़े स्केटिंग कर रहे और बरफ़ का आनंद उठा रहे हैं।

इस फोटो को देखकर हम यह कह सकते हैं कि यहां पर बहोत सारे बच्चे हैं और सभी बच्चे लड़की बच्चे हैं।

यहां पर हम लोग देख सकते हैं की रस्सी पे बहोत सारे कपड़े भी टंगे हुए हैं सूखने के लिए --

और वहां पर आप लोग देख सकते है इस के बगल में इतनी बड़ी बिल्डिंग भी है।

यहां पे हम लोग देख सकते है की सभी बच्चे एक साथ में कुछ डिस्कशन भी कर रहें हैं शायद।

और हम लोग देख सकते हैं कि यहां पर एक बिल्डिंग भी है जो शायद मंदिर लग रहा है देख करके और यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि बच्चे बूढ़े जवान सभी यहां पर मौजूद है।

इस फोटो को देखकर हम लोग कह सकते हैं कि ये किसी गांव के फोटो है।

यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि एक ऑफिस बिल्डिंग भी है और छोटे छोटे शॉप्स भी है यहां पर साथ में।

इस फोटो को देखकर हम लोग ये कह सकते है कि ये किसी गांव की फोटो है जैसे कि इस फोटो में हम लोग देख सकते है कि यहां पर एक छोटी सी दुकान है और उसके बाहर में कई आदमी खड़े हुए हम लोग देख सक --

ये है की यहाँ पर दो आदमी सामने सामने में खरे हुए हैं जिन्होंने सेम कलर की स्वेटर पहनी हुई है और नीचे मैं जींस पहनी हुई है।

इस फोटो को हम लोग देख के कह सकते है कि औरतों ने एक जैसे कपड़े पहने हुए हैं और पुरुषों ने भी एक जैसे कपड़े पहने हुए हैं।

यहां पर हम लोग बिल्डिंग के बगल में हम लोग देख सकते हैं के एक हरे रंग की भी बिल्डिंग है।

उसके आगे में एक पीले रंग की बिल्डिंग है उसका फोटो में हम लोग दो व्यक्ति को भी देख सकते हैं एक पुरुष एक स्त्री है।

इस फोटो को देख के हम यह सकते हैं कि यह एक चर्च की फोटो है जो की अंदर से ली गई है।

और उसके पीछे में एक लेडी है जिन्होंने पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई है और वो बैठी हुई हैं।

उसके पीछे में हम लोग देख सकते हैं कि क्रॉस का सिंबल भी लगा हु --

इस फोटो को देखकर हमलोग यह कह सकते हैं कि यह एक चर्च की बिल्डिंग है जोकि बहोत ही ऊंची है।

और हम लोग देख सकते हैं कि इस बिल्डिंग को बहोत ही सुंदर तरीके से डिजाइन किया गया है और बनाया गया है।

हमलोग देख सकते है की इस बिल्डिंग को ब्राउन और व्हाइट कलर से पेंट किया गया है।

और इसके आगे में बहोत सारे आदमी लोग भी जमा हुए हैं और बहोत सारे पेड़ पौधे भी --

इस फोटो को देखकर हम लोग यह कर सकते है कि इस फोटो में बहोत सारे आदमी लोग जमा हुए है और इन सभी को देखकर लग रहा है कि ये लोग कोई फेस्टिवल मनाने की तैयारी कर रहे है।

इस फोटो को हम लोग देख कर कह सकते हैं कि ये किसी कंस्ट्रक्शन साइट की फोटो है यहां पर हम लोग देख सकते की बहोत सारे लेबर मजदूर काम कर रहे हैं।

और हम लोग देख सकते हैं कि यहां पर एक आदमी बैठकर पाइप से पानी --

इस फोटो को देखकर हम यह कह सकते है कि एक छोटे से स्टॉल की फोटो है जिसको बहोत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है।

और इसके सजावट मे इन्होंने रिबन्स का इस्तमाल किया है और बहोत अलग अलग रंग के रिबन्स का --

यह फोटो को देख के हम लोग ये कह सकते हैं कि ये किसी सरक रोड साइड की फोटो है।

इस पिक्चर से हम लोग देख सकते है कि स्टेज को कितने सुंदर तरीके से सजाया गया है इस सजावट को देख के हमें लग रहा है कि यह सजावट शादी के लिए की गई है इस दि --

पे दूल्हा बैठे हुए है दो आदमी के साथ एक छोटा बच्चा है और एक आदमी है स्टेज पे और भी दो लोग खरे हुए हैं।

उसके बाद नीचे में बहुत सारे लोग बैठे हुए है कुछ लोग खड़े हुए है यह देखकर लग रहा है कि शादी हो रही है यहां प --

इस फोटो को देख कर हम लोग बता सकते हैं कि इस फोटो में चार लड़कियां है और चारों लड़कियां डांस प्रैक्टिस कर रही है दो लड़कियों ने नेवी ब्लू कलर की जींस --

पंखे का कलर इसमें ब्लैक है और पंखा चल रही है।

इस फोटो को हम लोग देख कर कह सकते हैं कि ये किसी स्कूल की फोटो है।

उसके बाद में हम लोग यह देखकर कह सकते हैं कि इन्हें बहुत आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए इनकरेज किया जा रहा--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

और वो लोग कुछ काम कर रहें है शायद कुछ आर्टिंग वर्क कर रहें हैं।

और यहां पर एक लेडी भी है जोकि देखकर सिस्टर लग रही है उसने व्हाइट कलर की फ्रॉक पहनी हुई है ब्लैक कलर की चप्पल पहनी हुई है।

इनमे हमे दो पेर दिखाई दे रहे एक पेड़ पे लाल-लाल लाल का रंग का पत्ते है एक पे हरे रंग का पत्ता है उसके बाद में --

उसके बाद ये हम हमें दो और बाइक दिखाई दे रहे है।

और यहां पर हमलोग देख सकते हैं कि एक बाइक में तीन आदमी बैठे हुए हैं।

और हम लोग देख सकते हैं कि एक पेड़ भी है आगे में ऑटो वगैरा भी है।

इस फोटो को देखके हमलोग यह कह सकते हैं कि यहां पर एक गाड़ी है जो लाल रंग की है और पूरे प्लास्टिक में रैप्ड है।

उसके बाद यहां पे हम लोग दो आदमी देख सकते हैं जो कि शायद यहां पर काम करने वाले हैं और एक आदमी बैठा हुआ है और एक आदमी खड़ा हुआ है।

और एक आदमी जो बैठा हुआ है उसके बाजू मे एक बाल्टिंग भी है जो की सफेद और नीले रंग की हैं।

यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि इस मंदिर को कितने सुंदर तरीके से सजाया गया है और यह मंदिर कितने बरी है।

और अंदर मे दुर्गा मां की बहोत बड़ी सी मूर्ति भी है।

अ शिसा का दरवाजा नजर आ रहा है उसका आगे में आदमी है।

इस पिक्चर में हमें एक जे_सी_बी दिखाई दे रही है जो मिट्टी खोद रही है उसके बगल में तीन आदमी खड़े हुए है।

ये पिक्चर एक जिम का है जिम में एक ट्रेडमिल है तीन ट्रेडमिल हमें नजर आ रही है यहां पे हम लोग भाग सकते हैं उसके पीछे में --

सफेद रंग की दीवारें है खिड़की में से रोशनी आ रही है।

वहां पे सीढ़ी भी है गांच के पे दरवाजे के पीछे एक पेड़ है।

पेर पे बहोत बड़ा पेड़ है बहोत विशाल पेड़ है ये।

इस फोटो को देखकर लग रहा है कि ये कोई रिलिजियस या फिर कल्चरल रिचुअल हो रहा है जिस तरह से हम लोग देख सकते हैं की तजिया को कितने सुंदर तरीके से सजाया गया है।

पर्पल येलो रेड कलर के आर्नामेंट से इसको सजाया गया है यहां पे --

बहोत सारे आदमी लोग भी खड़े है दो आदमी इसको उठा कर ले जा रहें शायद इसको मस्जिद से उठाकर ले आया गया है।